यहां पर ग्रिल जो लगी हुई है वह ग्रे कलर में और रेड कलर में है आप लोग देख सकते हैं माता रानी का भव्य स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है माता रानी ने त्रिशूल लिया हुआ है।

वो शॉप दिख रही होगी शॉप की सायद ओपनिंग है तो आप लोग देख सकते है यहा पर बलून से डेकरैशन की गई हे बलून्स कलर ब्लू कलर हे व्हाइट कलर है एण्ड रेड कलर मे की गई हे।

शोरूम के हिसाब से ही की गई है यहा पर दो ढोल रखे दिख रहे है ढोल वाले भी दिख रहे होंगे ढोल वालों को आप देख सकते है अलग डिफ्रन्ट कलर के कपड़े पहने हुए है बाइक खड़ी हुई --

आप लोग देख सकते है यहाँ पर वाइट कलर का आपको ऊपर से मंदिर टाइप का दिख रहा होगा साइड मे मंदिर मे नकाशी की गई है आप लोग देख सकते है।

यहा पर आपको एक स्टेज दिख रहा होगा स्टेज के बैकग्राउंड का कलर गोल्डन कलर मे दिया गया है और चैर का कलर सिल्वर और रेड मे है आप लोग देख सकते है।

देख सखते है आप लोगो को कुछ लड़के हुए नेचुरल मे दिख रहे होंगे साथ मे उन्होंने रेड कलर का बैग लिया है और ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहना है ब्लू कलर की पेंट पहना है।

एक और फ्लावर यहाँ पर पता नहीं शायद गलती से होगा यहाँ पर एक रेड कलर का फ्लावर रखा होगा आप लोग देख सकते है कितने सारे गेंदे के फूल है।

यह पर आपको पार्टी हॉल नज़र आ रहा होगा साथ में ही आप देख सकते है कि चेयर का कलर कितनी प्यार से डेकोरेशन किया गया है वाइट कलर का चेयर हैं कलर चेयर हैं। उसमे --

देख सकते है कितनी सारी आपको फूल मालाये दिख रही है कमल का फूल दिख रहा होगा आप लोगो को यहाँ जो सादी में यूज़ की जाती है।

यहाँ पर तीन बाइक दिख रही होगी एक साइड पे बाइक है चार टोटल चार बाइक खड़ी दिख रही होगी साथ में यहाँ पर बाइकस का कलर नेवी ब्लू कलर है रेड कलर एंड ब्लैक कलर में है।

हरा कलर है उसमे ऑरेंज कलर है च्रक दिख रहा होगा आपको यंहा पर तीन शटर लगी दिख रही होगी आपको ग्रे लेकर की कुछ बोतल रखी दिख रही होगी वाइट और रेड कलर में--

यलो कलर है ग्रीन कलर की मक्खी है सिल्वर कलर की आप देख सकते है प्लेट है।